ये मछली का दुकान है।

यह माता जी का मंदिर है। दुर्गा माँ का मंदिर है इसमें आरती कर रहे हैं आ और बहोत से सारे भगवान भी हैं।

बगल में घर है। बहुत सारे पेड़ हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत खूबसूरत जगह है। यहाँ पर सब लोग अ नहाए भी चार पांच आदमी हैं। बहोत अच्छा लग रहा है।

बच्चे भी आ रहे है। अच्छा लग रहा है।

डांस है डान्स करेंगे। नयी क्लास है। अच्छी डान्स कर रही बहोत अच्छा भी जगह है। बच्चे डान्स कर लिए हैं।

ये कहीं बाहर का सीन है। सड़क के पानी है बहोत बहोत ज्यादा बहोत --